लड़की है जो कि डांस करती हुई दिख रही है उ उसके कपड़े रेड कलर के हैं वो एक मैट पर खड़ी हुई है मतलब आ बैठी है।

फर्श बहोत क्लीन है वाइट कलर का फर्श हैं और खिड़कियों पर परदे डले हुए हैं।

ये एक रैली जा रही है जो एक धार्मिक रैली है और --

ये एक मेला है यहाँ पर बहोत सारे झूले लगे हैं सामने बहोत सारे बच्चे एक कार जैसे झूले मे झूल रहे हैं और --

ये एक सब्जी की दुकान है यहां सब्जियें और फल रखे हैं पत्ता गोबी जैसे कुछ सामान हैं और सब्जियें रखी हैं टमाटर रखे हैं एक आदमी उन सब्जियों को --

ये लकड़ियों का कुछ काम हो रहा है यहाँ पर हर जगह जमीन पर लकड़ियाँ बिछी हुई हैं और अ रॉड अ लगी हुई है ।